और ये यहां पर एक उनकी मैडम है और पीछे साइड में पेड़ पौधे हैं इधर साइड बच्चे खड़े है।